और कुछ टीचर खड़े हुए हैं।

सामने की साइड में बड़े बड़े मिरर भी लगे हुए हैं।

इसके गेट पर एक पोस्टर लगा हुआ है।

और उनके पास कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई है।

और ऊपर की साइड में एक एग्जिट फैन भी लगा हुआ है।

और पीछे कुछ पेड़ भी खड़े हुए हैं।

जिसके ऊपर कुछ व्यक्ति पेंट कर रहे है।

इसके अंदर कुछ औरतें और व्यक्ति बैठे हुए हैं।